इनकें चटाइयों का रंग नीला है जबकि एक महिला की चटाई का रंग नारंगी है।

बड़ा सा एक झाड़ है। पीछे बड़े बड़े पेड़ हैं और एक बहोत बड़ी बिल्डिंग भी दिख रही है।

ज की एक अन्य व्यक्ति सपेद कलर के कपड़े पहने अंदर के ओर जाते दिख रहा है सामने सायद एक ए.टी.एम. मशीन और दुकान की तस्वीर है।

बैनर पे मानसरोवर स्टेशनरी ऐसा लिखा है। नीचे और छोटे-छोटे अक्षरों मे कुछ लिखा है। बगल से एक स्टील की सीढ़ी गई है।

पीछे जो एक चक्र जैसा बना है उसमें से सफेद कलर की रोशनी आ रही है सभी मशीने हरे कलर की हैं डार्क हरे कलर की।

तस्वीर अंधेरे की है लेकिन एक बड़े लंबे से मकान की है जो दो मंजिला है। यह शायद एक अपार्टमेंट जैसा लग रहा है।

तस्वीर के अंदर छोटी - छोटी बच्चियाँ जमीन पर बैठकर कुछ बना रही हैं इनके सामने में कुछ सामान रखे हुए हैं इन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पे रखे हैं।

पीछे दीवार का रंग लाल है आधा और ऊपर का हिस्सा सफेद जैसा लग रहा है। बीच में एक खिड़की जैसा कुछ बना है।

पीछे पीले रंग का बड़ा-सा मकान दो मंजिला दिख रहा है। बीच में एक बिजली का खंबा दिख रहा है। मकान में एक खिड़की भी दिख रही है।

यह प्लास्टिक और कागज से कुछ डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

लोहे का बड़ा सा एक खिड़की बना हुआ है। जिसमें से रोशनी आ रही है।